मुझे इस तस्वीर पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

लाल कुर्सियां दिख रही हैं।

और दूर पर दो कार नजर आ रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर पर एक खाली कमरा दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर एक बहुत बड़ा मंदिर नजर आ रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर एक बहुत बड़ा सा ब्रिज दिख रहा है।

एक इंसान बाइक पर दिख रही है।

और यहां कोई इंसान नहीं है।

तीन खाली कुर्सियां दिख रही है।

और उसके बाहर तीन बड़े बड़े बाइके रखे गए हैं।

आखिरी इंसान लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

और बहोत सारे लोग ऑटो पर बैठे हुए भी हैं।

मुझे इस तस्वीर पर एक खाली कमरा दिख रहा है।

जो की एक डिलीवरी ऑफिस है।

दो इंसान चलते हुए नजर आ रहे है।

और बादल के साथ आसमान बिल्कुल काले रंग का है।

मुझे इस तस्वीर पर बहोत सारी साइकिल नजर आ रही है।